दिख रहे है यहां पर मुझे छोटे छोटे घास दिख रहे है और यहां--

यहां पर मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यह एक रेस्टोरेंट है।

हाइट हाइट में यहां पर मुझे बहुत सारे घर भी दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है।

और यहां पर मुझे बहुत सारी झाड़ियां दिख रही है।

यहां पर मुझे एक फरवा भी दिख रहा है।

पर मुझे एक आगे भी दिख रहा है।

बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई हैं यहां पर मुझे बहुत सारे छोटे बड़े बड़े पोस्टर्स भी दिख रहे हैं।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

यहां पर मुझे बहुत सारे कुर्सियां दिख रही हैं।

पीछे बहुत सारी लाइट्स दिख रही हैं जो कि बहोत ज्यादा कलरफुल है।

झे बहोत सारे लड़के दिख रहे--

पर मुझे एक बोहोत बड़ी शॉप दिख रही है।

इसको बैलून से सजाया गया हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है जहां पर मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

खिड़कियों में मुझे बहोत सारे बड़े बड़े पोस्टर भी देख रहे हैं जिसमें बहोत सारा लिखा--